यह गर्ल्स का शो रूम है यहा पे एक अंकल एक आंटी है और यहा पर काफी सारी चेयर्स भी है और टेबल भी है और लाइटिंग भी है काफी अच्छी है बहुत अच्छा है यह शो रूम है ये।

टावर है और यहाँ पे फोर नील नीले कलर की झोपड़ी है और यहाँ पे ग्रीन कलर पेड़ हैं और आसमान भी अच्छा हो रहा है। इसमें काफी सारे बहोत सारे पड़े हैं काफी अच्छे हैं।

ये काफी अच्छी झील है। यहां पर दो बोट घूम रही हैं इसमें काफी सारे लोग बेठे हैं और ये तीन-चार पक्षी उड़ रहे हैं काफी सारे और दो लोग एक ही बोट में अकेले बैठे हैं।

ये काफी अच्छा घर हैं एक बिल्डिंग सी है काफी बड़ी पूरे कल पूरे वाइट कलर की है और एक यहाँ पे एक पेड़ खड़ा है। इसे वाइट ऑरेंज कलर हुआ है यार सामने एक खड़ी कार --

घर में पेन्ट हुआ है ब्राउन कलर और ग्रे कलर का भी घर है और काफी अच्छी

यहा पे काफी अच्छा माहौल है और यहाँ पे झील सी है और काफी बड़ी बोट खड़ी है। ब्राउन कलर की और एक अंकल खड़े है। यहा पर चस्मा लगा रखा है। ग्रीन कलर का।